यहाँ पे एक पहाड़ है। बहुत बड़ा पहाड़ है चट्टान तो बहुत बड़ा है। चट्टान के निचे कुछ लोग बसे हैं आदिवासी लोग शायद हैं और यहाँ चट्टान के सामने एक सिंगल पेड़ है जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चट्टान के उपर भी बहुत खूबसूरत नजरा आ रहा है देखने में। काफी ऊँची ऊँची चट्टान --